इसमें बिल्डिंग दिख रही है घास दिख रही है पेड़ दिख रहा है आशुमान दिख रहा है।

आदमी दिख रहे हैं पर्दा दिख रहे हैं।

औरते दिख रही है। चोंगा दिख रहा हैं।